पानी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है जिसका कलर भूरा है आसमान एक दम साफ है पानी भी बहुत साफ दिख रहा है।

यहाँ प-पर बैठने के लिए दो जुट के टेबल है और एक टेबल खुला है जिसमे बहुत सारे पुस्तक रखे हुए है एंकर का बोर्ड लिखा हुआ है ऊपर एक बड़ा सा पोट जिस पर कुछ लिखा हुआ गया।

चित्र में हम देख सकते हैं कि एक बड़ा -सा मशीन है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बडी सी बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग बड़ी बहुत बड़ी है ठीक उसके सामने छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं।